आज यहाँ घाम हुआ है पत्थल है और घास-फूस बढ़िया बरसात के समय का बात है और दोनों आदमी जा रहै हैं किधर से आ रहा है किधर से जा रहा है आके दोनों भेंट होने के चक्कर में--

ये भाई गये है फोटो खींचवाने सुनसान जगह पे चट्टान के नीचे और कितना मस्त कुआं का खाई दिख रहा है वहाँ हल्का-हल्का--

और इसको का हाईवे बोलते है और इधर कुँआ -खाई पूरा है पूरा पानी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत असमान का कलर तो अउ अच्छा लग रहा हैं।

ये एक तलाब है जिसके में नाव है अउर इसका सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा दिख रहा है तरी काला ऊपर हरा अउ निचे पीला अउ इसके कारण ये रस्सी में बंधाया है।

आउ लाईट कलर भी बोहत अच्छा है जोकि उस पे पर रहा है तो और अच्छा लग रहा है जिसके कारण मेरे को बोहत आनंद आ रहा है इसको देख के --

और बहुत गोला-गोला सा भी है और बहुत प्यारा लग रहा है।

यहाँ खेलने में बहुत आनंद आता होगा मेरे को भी आता देखने के बावजूद--

ये बहुत विश्व पुराना साल का है जो कि रानी रानी राजा लोग इसी पहले मड़ही टाइप से रहता था राजा के दडी और इसी में पहले रहता था--

एफ इ एम ए एल इ जी इ एन इ आर ए एल वार्ड रूम लिखा है ये बिस्तर भी लगा है।

ये एक घर है बहुत किनारा में है बहुत प्यारा-सा है बहुत अच्छा लग रहा है जिसके पास अईसा घर हम लोग का भी रहता तो कितना अच्छा रहता--